स्कूल के अंदर एक ग्राउंड बनी हुई है।

ग्राउंड के अंदर एक नेट लगी--

ये एक होटल है होटल के बाहर बहोत ही सुंदर वाटर --

यहां पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई है।

और एक कंप्यूटर रखा हुआ है कंप्यूटर पर लिखा है ग्रीन स्ट्रीट फूड काउंटर और पीछे एक फोटो --

और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं सेवन फाइव टू सिक्स --

और दुकान के अंदर बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई हैं और--

वॉच भी लगी हुई है बैठने के लिए सोफे और चेयर्स लगे हुए है ए_सी भी लगा हुआ है दीवार के--

ऑफिस है आधार एंडोर्समेंट एंड अपडेट सेंटर --

ये एक गद्दे की दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे गद्दे--